इस तस्वीर में देख पा रहे है कि यहाँ पे एक मुस्लिम लोग का मस्जिद बनाया गया और पेड़ नजर आ रहा है और किनारा में बहुत ज्यादा अ ईटा से बनाया घेरा गया है।

और यहाँ पे एक मन मंदिर है और इधर छोटा छोटा मूर्ति टाइप का बनाया गया है इधर रोड है रोड पे आदमी चल रहै है इधर से उधर।

इस तस्वीर मे देख पा रहै है की ये कोई स्टेशन का तस्वीर है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जोकी बेठे है और कुछ लोग हैं जोकि खड़े --